मुझे इस फोटो में सामने में कई सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं हरी भरी घास फूस लगी हुई दिखाई दे रही--

सामने की ओर कई सारे इंसान खड़े बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने की ओर।

अ जलेबियां ऐसी दिखाई दे रही हैं रात के रात का समय दिखाई दे रहा है। ।

ऊपर की ओर व्हाइट कलर की लाइट जलती हुई दिखाई दे जो जलेबी में रोशनी देती हुई दिखाई दे रही सामने की ओर।

देखिए इंसान फो सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर नीचे की ओर लगाई गई--

मुझे इस फोटो में सामने कि ओर आजू बाजू के फैक्ट्री बनी हुई दिखाई दे रही है सामने वो वल्डक्लास दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में सामने की ओर एक बैनर लगा जिस बैनर में--